यहाँ नदी के किनारे का नजारा है जिसके ऊपर एक पुल भी है।

यह एक मंदिर है जोकि काफी सुंदर है और काफी प्राचीन भी नजर आ रहा है।

यह एक स्कूल है जोकि काफी बड़ा सा है। बीच में बड़ा सा मैदान भी है।

यह एक स्कूल है जिसका नाम एकेडमिक ग्लोबल स्कूल है इसके आसपास काफी हरियाली है।

और काफी दो झंडे भी लगे हुए हैं।

इसके बाहर एक तरफ हनुमान जी की नारंगी और सुनहरी मूर्ति है और दूसरे तरफ गणेश जी की पूरी सुनहरी मूर्ति है और बाहर लिखा है ॐ नमः शिवाय।

एक औरत भी खड़ी हुई है। उसका नाम वाणी जयकर भवन है।